यह सामने हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ और उसके पास में बच्चा भी हमें दिखाई दे रहा हैं ।

और एक रखी हुई दिखाई दे रही है स्टील की और तार हमें दिखाई दे रहे है और ऊपर छत हमें दिखाई दे रही--

सामने तस्वीरे हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक काँच का गेट भी हमें दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही है ऊपर छत है और उस पे लाईट लगी हुई दिखाई दे रही--

हमें यहाँ पर अनार रखे हुए दिखाई दे रहे है बनाना रखे हुए दिखाई दे रहे है पपीता दिखाई दे रहा हैं ।